बगल में बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पे पत्थर ही पत्थर दिख रे है ऐसा लग रहा है--

जो की सामने बोर्ड में लिखा हुआ है।

कोई गिफ्ट लेकर रखे हैं किसी चीज की प्रतियोगिता हुई थी जिसमें कंपटीशन में--

पेर दिख रहे है पहार दिख रहे है घूमने की कोई जगह है।